ये आप लोग देख सकते है ये एक चर्च है जो चर्च के पास में वो लगा हुआ है जीजस का --

और ये आप लोग देख सकते हैं यहां एक पेड़ तो पेड़ है और यहां पे ये--

ईच एंड एवरीवन एक्शन का बोर्ड लगा हुआ है जिस पे लिखा हुआ है।

औरली ही पिंग टेट मेटर इस हार्ड वर्क --

आप देख रहे होंगे यहा पे एक लोटस आइस क्रीम ख त लिखा है।

और इसमें हरी बत्ती जल रही है और निच्चे एक अगा वो खड़ा है वर्कर और ऊपर प्लैन में पायलेट तयार है निचे एक ट्रक खड़ा है।

जो के आगे लेकर जायेगा इसको फिर ये उड़ान भरेगा--

सूरज अभी निकल रहा है या जाने वाला है और टावर लगा हुआ है बहोत सारी व्हाइट कलर की बिल्डिंग दिख रही होंगी आपको।

जो के आप देख सकते है किसी मोटर का है।

यहा पे बोहोत सारे पेड़ दिख रहे होंगे आप को--

जो की रे वाइट कलर है और या पास में एक गाडी खड़ी हुई है।

और यहाँ पर बहोत सारे स्कूटर बाइक वगेरा खड़े है जो शायद किसी एम्प्लोयी के लग्ग रहे है हम को --

ब्लू कलर का सेड लगा हुआ हें जिसे तिन बोलते हें और ये या पे भी बहोत सारी भीड़ आपको देखने के लिए मिल जाएगी।

और ये भेड़ कुछ ऊपर जा रही है कुछ नीचे है कुछ लेडीज है और अ कुछ अंकल है जो जा रहे है आगे की तरफ --

जो मना कर रहे है कचरा फेलाना जरूरी नही है।

और पार्क के सामने एक कॉलेज है स्कूल है जिसके पास मे पेड़ लगे हुए है बोहोत सारे --

जेसे ये टोयटा की इनोवा है इनोवा क्रेस्टा --

और दो गाड़ी बाहर खड़ी हैं वाइट कलर की बीच में से अ फोटो लिया गया है बीच में एक फुटपाथ है।

और ये कितने चार फ्लोर है।

और ये देखने में बडा अच्छा लग रहा हैं और ये बहुत सारे पेड़ है जो देखने को मिल सकते हैं पीछे बहुत ही अच्छा एरिया ह--

और ये टी_वी चल रही है पर टी_वी पे नो सिग्नल आ रहा है एक बोत्तल रखी है टेबल पे --

ये आप देख सकते है ये किसी रेस्टोरेंट का फोटो है इसमें बोहोत सारे किचन का --

यहाँ पे बहोत सारे कप वगेरा रखे हैं बॉटल रखी हैं या किसी बाहर का हैं जोकी आपको देखने में अच्छा लग--